लोग खाना खाने आते हैं यहाँ पर समोसा पिज़्ज़ा --

ऑटो वर्क शॉप है इसमें लोग ऑटो --

फैक्ट्री है इसमें --

क्या चीज़ का काम चल रहा है लग तो रहा है कि अर्थिंग-उर्थिंग सब जुड़ाया हुआ है करंट --